का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक मैदान कर छ दिखेण लग्युं यख मा जी दिवाल छा दिवाल मा जी कुछ कार्टून करन बणाया।

चित्र का अनुसार यखमा जी जु छा हमते एक गेट कर दिखेण लग्युं यखमा जी जु छा एक भगवान जी कू मंदिर कु गेट कर छ लगण लग्यूं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम तें एक पीला अर लाल रंग की इमारत कर छ दिखेण लगी य इमारत दुई से तीन मंजिल की छा ईं पर --

यख मा जी यो लाखड़ा का बहोत ही सूंदर कर छन बडायाँ पिछड़ी मा जी कुछ ईमारत दिख्येंणी यख पणि कुछ दिख्येंण लग्युं कुछ सामान छ रख्युं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक मैदान कर छा दिखेणु यखम हरयूं भरयूं मैदान कर छ लगणु यखम देखणा मा लगण लग्युं की यखम एक --

यख फणु कुछ पर्दा छन खिड़कियों मा जी दिखेण लग्यां यख फण सफ़ेद अर भूरेणू रंग छ होयुं।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा एक बड़ु बारिकु ढोकरू कर छ दिखेण लग्युं यख मा जी जु छा कुछ बोयूं कर छा लगण लग्युं देखण मा लगण लग्युं यख --

यखम हरयूं भरयुं घास कर छ उगयुं यखम कुछ भ्वां पर छन पडियां यखमा जी जू छ एक कू बगीचु कर छ अपणा कुछ डूंगा छन रख्यां।